पीछे में भी बहुत सारा बस लोग दिखाई दे रहे है और बहुत ज्यादा पेड़ पौधा भी है वो जो ग्रीन कलर में है।

स्कूटी भी दिखाई दे रही उसका सामना में जो कुछ बोस्ता में भर के बैग दिखाई दे रहा है एक वॉल भी है वो जो है व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है

यहाँ में जो एक घर दिखाई दे रहा है घर में जो बहुत ज्यादा कपड़ा जो टंग के रखा हुआ है।

ये जो बहुत ज्यादा दरवाजा भी है वो भी बंद करके रखा हुआ है।

और उसका सामने में जो कुछ पत्थर पत्थर भी दिखाई दे रहा है।

और सामने में जो कुछ आफ्टर सिक्सटी डेज भी लिख के दिखाई रहा है।

एक पिं जैसा भी दिखाई दे रहा है एक चेयर है और चेयर के सामने में जो कुछ तार और वायर भी दिखाई दे रहा है।

और वॉल का कलर जो व्हाइट में दिखाई दे रहा है।

ओल्ड लोग का कॉलर रखे है साइज भी अलग अलग दिखाई दे रहा है उसका सामने में जो बहोत लोग बैठा हुआ है।

और सामने में भी बहुत ज्यादा पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है वो जो ग्रीन कलर में है।

इसका सामने में जो कुछ पोस्टर जैसा भी दिखाई दे रहा है और एक पेंटिंग भी है उसका सामने मे जो कुछ लोग भी दिखाई दे रहा है।

एक बाइसिकल भी है उसका टायर भी दिखाई दे रहा है पीछे में जो कुछ कार्टून भी दिखाई दे रहा है।